अलगा के लिख रहा है देखिए एक बेंच पर दो विद्यार्थी है एक हरा शर्ट में है एक लाल शर्ट में हैं एक उजला शर्ट में है कहीं कोई मास्टर गार्ड नहीं दिखाई दे दिखाई दे रहा है इतना भष्ट्राचार चल रहा है खुले आम विद्यार्थी चीट कर --